ये एक फार्म हाउस है और यहाँ एक वाइट कलर की फोर व्हीलर खड़ी हुई है एक घर बना हुआ है।

और फोर व्हीलर गाड़ी खड़ी हुई है काफी अंधेरा हो रहा है दिये रखे हुए हैं।

खम्भा है बिजली के तार गए हुए हैं फिर उसके बाद में एक मिट्टी का ढेर पड़ा है एक यलो --

परिवार कल्याण संस्था और यहां कुछ अह लोग भी हैं आदमी भी हैं औरतें भी हैं एक--

छज्जा ऊपर छज्जे लगा हुआ है और नीचे बाजू में एक गेट है रेलिंग बनी हुई है।

अ मिक्सर जार रखा है ऊपर कांच के ग्लास जमे हुए हैं एक बोटल रखी हुई है वाइट कलर की एक टेबल है टेबल पर एक छोटा सा फ्लोर्स--

फिर एक मिनर दिख रहा है छोटा सा पेड़ पौधे दिख रहे हैं।

पर वाइट कलर की अ लाइटिंग वगैरह लगी हुई है।

ये एक डाक विभाग की पिक है जहाँ एक पोस्ट है और उधर लिखा है आधार भारतीय डाक।

खड़े हुई है और नीचे एक आधा कच्चा आधा पक्का रोड है उस--

और एक अ स्टेज अ बना हुआ है जहाँ कुछ लोग हैं वरमाला रखी हुई है।

बाहर पेड़ लगे हुए हैं दो एक दो एक बाइक वाला है एक।

पानी की बोतल लगी हुई है ऊपर पंखा लगा हुआ है सामने एक पे छत है।

तितली की वॉलपेपर लगे हुए है एक चार्जिंग में लगा हुआ है सामने दो--

एक बुक शॉप है जहाँ अ कबर्ड में बहुत सारी कॉपी किताबें रखी हुई हैं।

लाल कलर की माला अ पहन रखी है भगवान जी की।

ये कपड़ा मार्केट है एक कपड़ों की शॉप है जहाँ पे--

टंगे हुए है डमी में है एक रेड कलर का पिंक कलर का--

पेड़ दिख रहा है फिर उसके सामने एक बोर्ड लगा हुआ है वाइट बोर्ड उसपे कुछ लिखा हुआ है अंदर--

लोग हैं जो स्विमिंग अ पुल बना हुआ है इसमें से वजूं कर रहे हैं एक लड़का बैठा हुआ है।

दो लोग एक टू व्हीलर पे बैठा हुआ है।

एक अ फूलों की अ मार्केट है जहां फूल वगैरा रखे मलाऐ मिल रही हैं।

एक लड़का है झलवा कुर्ता पहना हुआ है वाइट ब्लू।

बस जा रही है लाइट के खंबे लगे हुए हैं पुल बना अ सामने पुल--

एक व्हाइट कलर की फोर व्हीलर जा रही है और बाहर भी और अ एक खंभा लगा हुआ है लाइट का उसके नीचे--

कंप्यूटर रखा हुआ है एक और एक मेज है उस पे ब्लू कलर की फाइल रखी हुई है बोतल लगी हुई है सेनीटाइजर रखा हुआ है।

मंदिर है एक बहुत बड़ा सारा मंदिर है बड़ा तालाब है।

कलर की बिल्डिंग है बहुत बड़ी सारी दो गेट लगी हुई है।

एक लड़का खड़ा है नीचे कचरे का डिब्बा रखा है और कुछ दो तीन बोतले राखी हुईं हैं बी--

एक मंदिर है और मंदिर के ऊपर एक मीनार है बहुत बड़ी सारी बाहर--